यहाँ पर किसी का पूजन समाहरोह चल रहा है। यहाँ पर काफी सारे लोग बेठे हुए है पूजा हो रही है।

और वहाँ पर कैमरे से बीडियो भी बना रहे हैं। उसके अगल - बगल में एक टेम्पू भी खड़ा है। जो चित्र बहोत ही --